और बहोत सारे लोग म मिट्टी का प्याला लेकर के लेडीज और जेंट्स दोनों लोग ऑरेंज कलर कपड़ा पहन कर के बैठे हुए --